यह एक घर में पोस्टर टंगा हुआ है इस पोस्टर में उर्दू यह बंगला में लिखा हुआ है यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए है और भीड़ भी हो गया है गिनती करना मुश्किल हो रहा है।

यह मुस्लिम का मस्जिद है और यह बहुत बड़ा बनाया गया है ।

इसका शाखा गया में है । यहाँ एक गार्ड भी खड़ा है और रात का फोटो है । बाहर में सायकिल गाड़ी भी खड़ा किया गया है ।

यह एक पुल है पुल के साइड साइड में घांछ ब्रिक्ष हरा-भरा नजर आ रहे हैं पुल बहोत लम्बा लग रहे हैं और पुल में वाइट और रेड कलर का पेंटिंग किया गया --

यह एक शादी का मंडप है । यहाँ लड़का-लड़की बेठे हुए हैं और दोनों का रिश्तेदार आये हुये हैं और पंडित जी दोनों का कपड़ा एक दुसरे से बांध रहे हैं ।